एक आदमी ज्योंकि बैठा हुआ है वो स्टेज है स्टेज पर पीले रंग का पडदा लग हुआ --

हरे भरे पेड़ दिखाई दे रहे है पेड़ो पर टहनियां जिनपे हरे हरे पत्ते लगे हुए है।

यह एक मार्केट का दृश्य है जहापे नीचे फर्श है फर्श पर कुछ बोरिया रखी है बोरियों मै फुल रखे हुए है ज्योंकि पीले रंग के है।

एक है ज्योंकि लकड़ी का बना हुआ है जिसपर आकरतिया बनी हुई है दिखाई दे रहा है।

आसमान दिखाई दे रहा है आसमान मै बादल छाए हुए है चारो तरफ हरियाली छाई हुई है बड़े पेड़ है जिनपर हरी हरी पत्तियां लगी हुई है।

गार्डन दिखाई दे रहा है जीनमे हरे हरे घास दिखाई दे रही है इसपर ह सफ़ेद रंग के फुल भी दिखाई दे रहे है।

सड़क पर एक सफ़ेद रंग की कार दिखाई दे रही है।

नारियल के पेड़ दिखाई दे रहे है।

आसपास महिलाएं खड़ी हुई है जिन्होंने सफेद रंग की साड़ी मुह पे मास्क लगाये हुए है।

पेड़ है जिसकी टहनियां दिखाई दे रही है टहनियों पे पत्तिया लगी हुई है।

सफ़ेद रंग से कुछ लिखा हुआ है।

आसपास हरे भरे पेड़ दिखाई दे रहे है बिजली कि तार बंधे हुए --

ये एक किले का दृश्य है जिसपर हरी हरी घास उग उगी हुई है चट्टाने दिखाई दे रही है मोटे मोटे पत्थर आसपास पड़े हुए है।

ये एक पहाड़ी इलाका है यहापर पहाड़ दिखाई दे रहे है पहाड़ो के आसपास हरी भरी खेती हरी हरी घास दिखाई दे रही है पेड़ दिखाई दे रहे है उनपे हरे हरे पत्ते लगे हुए है।